इसमें सदस्यों की संख्या लिखी है वार्षिक सदस्य अजीब है और इसमें कितने-कितने से कितने टाइम तक खुलेगा वो लिखा --

यह एक पार्क का फोटो है जिसमें तार की बाउंड्री लगी हुई है और हरे-भरे पेड़-पौधे लगे हुए हैं| बीचों-बीच एक पेड़ दिख रहा है जिसके आस-पास कटे-फटे से पेड़ पड़े हुए हैं जिसका कलर लाल और नीला है।

और आस में और पास में एक चार खम्भों का टिन शेड दिख रहा है।

ये एक बिल्डिंग कि फोटू है जो दो मंज़िला बिल्डिंग है इसमें हरे लाल नीले का पेंट बना हुआ है एक सुंदर सी पेंटिंग लगी हुई है सामने एक --

पेड़ दिख रहा है ग्राउंड में हरी-हरी घास लगी हुई है सीढ़ियां बनी हुई हैं और इसका छत गोल डिज़ाइन में दिखाई दे रहा है।

इसमें लाइनिंग लगी हुई है नीले कलर की बाउंड्री काले कलर की सड़क के साथ लगा हुआ है सामने एक बिल्डिंग और एक बोर्ड भी नजर आ रहा है।

और एक छज्जा सा बना हुआ है।

फोटो में एक पार्क का सा नजर आ रहा है इस पार्क में एक काले कलर का पक्षी बैठा हुआ है शुतुरमुर्ग के जैसा और इसमें तार की जाली लगी हुई है उसका घर भी छोटा सा बना हुआ है छज्जा भी लगा हुआ है।

ये एक पार्क जैसा फोटो नजर आ रहा है जिसमे सफेद कलर की एक गुम्बद बनी है उसके अंदर एक मूर्ति बैठी हुई है आसमान का कलर नीला दिख रहा है।

इस टावर में इतनी छतरियां ऊपर तक लगी हुई है यहाँ पे साथ में एक पेड़ भी है।

पठारों से ये मेहल बना हुआ दिख रहा है बहुत सुंदर कारीगरी इसमें नजर आ रही है।

और उस गेमिंग स्पोर्ट पर पीले कलर की सीढ़ियां लगी हुई है जिस पर एक लड़की खड़ी है और यह एक बहुत सुंदर सा गेमिंग पार्क --